यह एक गार्डन है जिसके बीच मे एक गोल आकार का जिसमे से झरना निकालता है।

यह एक जू है जू में काफी सारी लकड़िया रखी हुई है लकड़ी के ऊपर मोर खड़ा हुआ है।

ये एक टोकनी है जिसमे पॉलीथिन है और पॉलीथिन में काफी सारे झींगे है जो सफ़ेद कलर के है।

एक कार में एक इंसान पेट्रोल डाल रहा है और उसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है रोड पे काफी साडी गाड़ियां चल रही है।

ये एक खेत हैं खेत में काफी सारे छोटे-छोटे पेड़ पौधे हैं।

एक आदमी है जो के पेड़ में से कुछ तोड़ रहा है उसके हाथ में एक कटोरा है।

पढ़ाई कर रहे है किसी ने सफेद कलर की टी-शर्ट पहनी है शर्ट पहना है किसी ने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।